और सामने के तरफ बहोत बड़ी सी एक दुकान दिखाई दे रही है।

और होटल का एक बैनर लगा है।

यहां पर बहुत सारे डेक्स भी लगे हैं।